दिख रहा दिख रहा है और यहां पर ब्लू आसमान नजर आ रहा है और यहाँ आदमी के पीछे नदी बहती हुई नजर आ रही है।

ये एक बुक की दुकान है जिस बुक्स के ऊपर बुक्स यहां पर बहुत सारी बुक्स रखी है और यह मिथिला बुक्स सेंटर का इसपे बोर्ड लगा हुआ है।

और एक आदमी का ब्ले ए शूज दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का शूज है।

रहे है यह भरतनाट्यम कहीं हो रहा है इसके पीछे मूर्तियां बनी हुई है और नीचे घास जैसा लग रहा है।

और सबके हाथों में किताबें हैं और यहां पर रंग बिरंगे डेकोरेशन किया गया है।

यहाँ पर बहुत सारे लड़के लोग खड़े हुए हैं जो बुक्स के लिए कुछ ने मुंह पे माक्स लगाया हुआ हैं सभी अपना बैग्स टांगे हुए हैं।

नवरात्री का सीन लग रहा है जहां दुर्गा मां की मूर्ति नजर आ रही है यहां और एक लेडिस --

ये रेस्टोरेंट का सीन है जहां पर दो लेडीज है और एक जेन्ट्स और एक लेडीज सीट पर बैठे हुए हैं।

ली के लिए मछली खरीदने के लिए खड़े है और एक आदमी बेच रहा हैं यहां पर लेडीसे भी दो लेडिसे भी बैठी हुई हैं।